यहां एक गाड़ी है गाड़ी का रंग ब्लू कलर का है।

गाड़ी में चार चक्का लगाया हुआ हैं जो ब्लैक कलर का है।

घर के बाहर एक बाइक लगा हुआ है बाइक में दो ऐनक लगाया हुआ है।

घर के बाहर तार खींचा हुआ है तार में चार पांच बोल लगाया हुआ है।

घर के बाहर पौधा लगाया हुआ है जो हरा कलर का है।

बहुत सारा पेड़ हैं यहां एक घर भी हैं।

यह एक होटल है होटल में बहुत सारा लोग हैं।

दुकान में एक दो आदमीन बैठे हुए हैं।

दुकान के बाहर दो शटर लगाया हुआ है।

बच्चा का ड्रेस ब्लू रंग का है और ब्लैक रंग का है और कुछ साल ओढ़ कर खड़ा है।

गाड़ी में दो चक्का लगाया हुआ है जो करिया रंग का हैं ।

पोल में बहुत से तार भेजा हुआ है यहां बहुत सारे लोहा लकड़ रखा हुआ है।

घर का रंग एक पीला कलर का है।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

यह एक स्कूल है स्कूल के बाहर एक गेट लगा हुआ है जो सफेद कलर का है।

एक मंदिर के उपर झंडा लगाया हुआ है बहुत सारे घास और पेड़ है।

यह एक दुकान है दुकान मे बहुत सारा कॉपी किताब रखा हुआ है और एक आदमीन भी है।

दुकान में दो चार चेयर लगा हुआ है।